ये बॉउंड्री किया हुआ है भूरे कलर से और अंदर कुछ है ।

क्योकि यहाँ बहुत यहाँ बहुत बड़ा रोड है उधर रेड कलर का कुछ है उसके ऊपर गोबंछ है ऊपर टॉवर है और रिक्सा वाला है और एक बूढ़े व्य --

यह पुरे गुब्बारे से सजाया गया है इधर भी लग रहा है रेस्टॉरेंट ही बनेगाइसमें एक ब्राउन कलर कार रंगा हुआ है रखा हुआ है ।

यहाँ घर बन रहा है। सीमेन्ट बीमेन्ट उधर ट्रेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ घर बन रहा है।

यहाँ पर तलाब भी है हरे -हरे पेड़ -पौधे है ।

पर्यावरण है यहाँ पे और तार लगी हुई है बहुत सारे --

बोहोत अच्छी है स्प्राइट इस स्प्राइट मिलता है माजा -वाजा अच्छा लग रहा है।

अ दो ताला तो बन चुका है और ऊपर उधर से सीढ़ी बिठा --

वहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छे लग रहे है देखने में और --

यह पिक है जो मुंबई की है जो कि इसमें की --